और वही बहुत बड़ी-बड़ी अलमारी भी रही हुई है जिसके अन्दर बहुत सामान रखा हुआ है और कमरे के अन्दर बहुत सारी सामग्री भी रखी हुई है।

यहाँ पर एक बहोत बड़ा तालाब है जिसका रंग नीला है और तालाब के आजू-बाजू बहुत सारे छोटे-छोटे और बड़े-बड़े --

और इनके अंदर बहुत सारी सामग्रियां भी रखी हुई है और उसी के ऊपर एक ए.सी. भी लगी हुई है जिसका रंग --

वही थोड़ी सी दूर एक चद्दर का दीवाल भी बनी हुई छत भी बना हुआ है जिसके नीचे छोटी-छोटी सीढ़ियां बनी हुई है और वहाँ पर बहोत सारे लोग भी खड़े हैं।